हम जानते है ऐसे फंक्शन हम लोगो को शादी व्याह या फिर बर्थडे पार्टी या फिर और कई फंक्शनों में देखने को मिलते हैं।

जोकि क्रिसमस डे का दिन है।

यह काफी अच्छे कलाकार ने बनाई होंगी।

यह किसी शादी के फंक्शन । या किसी त्यौहार पे की जाती है।

हम जब कहीं घूमने जाते हैं। नदी के किनारे दो हमें ऐसी बोट देखने को मिलती हैं। जिस पर सिर्फ दो जने बैठ सकते हैं।